इस फोटो में एक रूम है।

इस रूम में बहुत सारे लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।

इसके वॉल का कलर पिंक कलर का है।

दो बोर्ड लगी हुई है एक ब्लैक बोर्ड और एक एक व्हाइट बोर्ड ।

इस फोटो में एक खाली सा ग्राउंड है।

इस ग्राउंड के साइड में बहोत सारे चेयर्स रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक खाली ग्राउंड है।

इसके वॉल का कलर वाइट कलर का है जिनमें रेख लगी हुई हैं।

और व्हाइट कलर से कलियरेंस लिखा हुआ है उसके साइड में एक आदमी बैठा हुआ--

येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

इस क्लासरूम में बहोत सारी लेडी डेस्क पे बैठे हुई हैं।

इसके सीलिंग में लाइट्स लगी हुई है।

इसमें बहुत सारे लोग साइड साइड में बैठे हुए हैं और बहोत सारे ठेले लगे हुए हैं।

इस बिल्डिंग के बाहर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

इस वॉटर फाउंटें के अंदर तीन मूर्तियां बनी हुई है।

इस रिक्शा का कलर रेड और येलो कलर का है जिसके साइड में एक बाइक पार हुई है।

इसके साइड में भी एक रेड कलर की बस और बहुत सारे लोग हैं जिसके साइड साइड में पेड़ है।